यह तस्वीर किसी वाटर पार्क की है।

इस तस्वीर में एक लड़का है जो ताकत दिखा रहा है।

जिसका रंग है जिसके कोने में कुछ कचरा भी है।

सड़क की तरफ से छोटे छोटे मकान और पेड़ भी है।